ऊं सरकारी स्कूल टाइप का दिख रहा है।

ऑरेंज वाइट ग्रीन कलर का वॉल पे बना हुआ है।

आसपास में घर दिख रहे है जो कि अ--

ये टाइप का बना हुआ है घर टाइप का और सामने पे बहुत अह लाईन की पोल --

आदमी के आगे एक वेटिंग मशीन है जहां वो कुछ नाप ये कर रहा है सामान नाप रहा है और उसके बगल में और एक वेटिंग मशीन है।

अ बहुत सारे पेपर का बॉक्स टाइप का दिख रहा है।

ये एक रोड टाइप का दिख रहा है और आस-पास में बहुत लंबे-लंबे से पेड़ दिख रहा है और सामने में रोड रोड के सामने में रोड टाइप का जो है उसके सामने में दो दीवार दिख रहा है जहाँ पर --

ये एक छोटा सा दुकान टाइप का दिख रहा है और--

ये एक स्टॉल छोटा सा स्टॉल टाइप का है।

चाय और कॉफ़ी अं और कुछ कुछ सामान भी टंगे हुए हैं चाय का स्टॉल लगता है।

ये एक शोरूम टाइप का है शोरूम ही है और पीछे बाहर में जो है कुछ--

ये खाली एरिया दिख रहा है अ ब्रिज के नीचे का हिस्सा दिख रहा है आ ब्रिज के नीचे का ऊपर में ब्रिज जाते हुए दिख रहा है और नीचे रोड दिख रहा है।